यहाँ पे बहुत बड़ी एक दरवाजा बना हुआ है जिस पर गणतंत्र द्वारा लिखा हुआ है।

यहाँं एक कार है जोकि लाल कलर की है उसकी डेंटिंग पेंटिंग चल रही है दो आदमी बैठे हुए हैं।

यहाँ पर सोफा बनाए जा रहे है सोफो की पेंटिंग चल रही थी| सोफा बहुत शाइन मार रहा है| ये लकड़ी से बना हुआ है।